इसके अंदर मूर्ति भी रखी हुई है।

यहां पर मकान है और काफी सारे सरिये भी है।

यह एक प्रकार का समंदर है समंदर में पानी है।

यह एक स्कूल है जिसमें काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं।

यह एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर घड़ी भी है।

यहां खिड़कियां और दरवाजा भी है।

यहां दो बसें खड़ी हुई हैं।

यहां पर काफी सारे बच्चे लंच कर रहे हैं।

और दूसरी साइड में पेंटिंग बनी हुई है।

और पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ लोग स्नान करने जा रहे हैं।